वह दिखाई पड़ रही है और सड़क के किनारे बड़ी-बड़ी इमारते दिखाई दे रही हैं।

ढेर सारी ऊँची- ऊँची इमारतें दिखाई पड़ रही हैं। एक छोटा सा पानी का तालाब दिख रहा हैं और कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे हमे सुबह का दृश्य दिखाई पड़ रहा हैं।

कमरे कि दिवाले सफ़ेद रंग की हैं। एक दीवाल पर एक टी.वी. लगा हुआ है। दूसरी दीवाल पर पर्दे लगे हैं और बीच में बिस्तर रखा गया है।